कलश रखे हुए है एक आदमी लकड़ी के स्टूल पर--

दे बिना पड़े हुए है ढोलक तानपुरे बिना चारो तरफ बहुत सुंदर ढोल--

सड़क के किनारे बहुत सारी हरियाली है बिल्डिंग्स बनी हुई है कारखाने है जिनमे टीन्स लगाई हुई है जो की --

पेटो से बनाई हुई हैं आसपास पत्तियों का रंग हरा हैं आसमान नीले रंग का हैं बिजली की--

घर बन हुए है एक दो मंजिला इमारत है बड़ी बड़ी बिजली के टावर लगा हुए है काल रंग की तारे है दरवाजे--

झंडे बनाये हुए है ऊपर छत पर इंडिया का झंडा लहराया हुआ है लाल रंग के गमलो में हरे हरे--

आदमी ने काले रंग के गॉगल्स पहने हुए है नीचे भूमि पर --

महिला वहाँ से गुजर रही हैं आसपास हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है असामना नीले और--